अ मकान का जो निर्माण हो रहा होता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं लोहा--

ऑरेंज रंग की अ शर्ट पहने हुए और ऑरेंज कैप लगाए हुए--

सजवीर में हमें अं दो लड़के हैं जो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

बीच में और उसके आसपास दो छोटी मूर्तियां और उसके पीछे--

अ खा पी रहे हैं वो एक जगह का दृश्य है जहाँ पर बहोत सारे--

हम इस तस्वीर में जो बोर्ड लगा नजर आ रहा है उस पर अजंता डेरी लिखा हुआ है और पास में जो बोर्ड लगा है उस पर बेकर्स लिखा है।

झुके हुए हैं सब लोग और काफी दूर और भी लोग खड़े नजर आ रहे हैं पेड़ लगे हुए--

और बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है सफेद रंग की वो दिखाई दे--

यह खाली कमरा है जिसमें बहोत सारी टेबल कुर्सी यह किसी इंस्टिट्यूट या स्कूल या कॉलेज का यह दृश्य है।

हार डाले हुए एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पास ही--

तस्वीर के अंदर हमें नजर आ रहे हैं दूर पहाड़ है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और उसके अ हमें सड़क एक नजर आ रही है जिसके किनारे दो बाइके खड़ी हुई --

एक लाल रंग की दीवार है उस पर भी तस्वीर लगी हुई है एक पेड़ की तस्वीर लगी हुई है वो भी पीछे दिखाई दे रहे हैं।

हमें दो आदमी तस्वीर में नजर आ रहे हैं एक ने हरे रंग की टी शर्ट पहनी है और एक ने--

हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है एक फंक्शन अ में बच्चे अ प्रस्तुति दे रहे हैं अपनी।

वहां पे अ पौधों में पानी देती हुई एक महिला है।

अ जो लड़कियां हैं वो दिखाई दे रही है पढ़ती हुई अ लिखती हुई--

ये तीन लड़कियां खड़ी हुई हैं जो दूर खड़ी हैं।

और यह किसी पुल के ऊपर से नीचे की तरफ पानी दिखाई दे रा--

छरे हरे पौधे भी पेड़-पौधे सूखी टहनियां भी लगी हुई है।

अ जो उसमें भरी रखी हुई है टप के अंदर।

और गुलाबी पीले रंग का ये है जिसपर पीछे लिखा है श्री महाशय जी निवास।

एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसके अंदर हमें अअ--

अ आधा गेट खुला है आधा लगा है और उस पर लिखा है प्रवेश निषरे निषेध आम रास्ता नहीं है।